कॉलेज काफी बड़ा है। कॉलेज के सामने काफी सारे कार खड़ी हुई है। काफी बड़ा एक ग्राउंड है। पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

ऊँ काफी सारी दुबा लगी हुई है।

उम सामने ही काफी प्यारे बिल्डिंग बने हुए है।